यह हरा भरा फूल है यह फूल काफी सुंदर है यहां सभी तरह के फूल है यहां फूल बहुत अच्छे हैं यह फूल कितने सुंदर दिखाई दे रहे है बहोत सारे आदमी है यहां जो की ऐसे फूल देख रहे हैं।

यह एक अस्पताल है । यहाँ इस अस्पताल में बोहोत सारी भीड़ हैं । यहाँ बोहोत आदमी दिखवाने आए हैं डॉक्टर के पास । यह अस्पताल काफी बड़ा है ।यह अस्पताल हर चीज की सुख सुविधाए हैं ।

यह एक स्टेज है यहाँ पर वरमाला हो रही है यह काफी सुंदर सजाए गए हैं यहाँ सभी तरह के फूल से सजाए गए हैं यहाँ एक लड़का-लड़की है यह लड़का शेरवानी पहने है लड़की लहंगा-चोली पहनी है।